यहाँ पर एक बड़ा-सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बहोत सारे हरी-हरी घासे दिखाई दे रहे है बहोत सारे--

चित्रकारी वर्क करी गयी है यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है सामने की तरफ एक लोहे का खंभा दिखाई दे रहा है एक दिवार साइड भी दिखाई दे रही है उसपे भी बहोत सारी मूर्तियाँ से चित्रकारी गयी है।

इसके अंदर उम्म बहुत तीन लोह बैठे हुए है एक औरत बैठी हुई है दो आदमी बैठे हुए है उन्होंने कोट पेहन रखी है पानी में डूबने के लिए--

वह सामने की तरफ एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही जो की लाल पीले रंग में है वहाँ पर कुछ लोगो की भीड़-भाड़ भी दिखाई दे रही है।

य मुझे यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ -भाड़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर एक टीला बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे टेंट्स लगाये गए है उसके ऊपर भी --

कुछ लोग दिखाई दे रहै है सामने की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके उपर भी बहुत सारे भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है लोग खड़े हुए है यहाँ पर किसी चीज का जुलुस निकला हुआ है।

मुझे यहाँ पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो की हॉल की तरह बना हुआ है और उपर की तरफ लाइट लगी हुई है।

नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है और ऊपर तराजु भी दिखाई दे रहा है और तराजु का कटोरा भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे की तरफ जमीन दिखाई दे रही है सीढ़ियां दिखाई दे रही है सीढ़ियों के उपर खड़े हुए है।

फूल लगे हुए पर्दे लगे हुए पर्दो का रंग कुछ सफ़ेद कुछ नीला--

रही है अंदर जाने के लिए ऐसे बहोत सारे गेट बने ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला--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

साइड में भी पत्ता गोभी रखा हुआ है।

और अंदर की तरफ वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें स्विमिंग पूल की तरह यहाँ पर बना हुआ उसका पानी कुछ रोजी रंग में दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग रंग में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ केले के पेड़ दिखाई दे रहे है केले के पत्ते दिखाई

मुझे यहाँ पर एक ऑफिस का रूम दिखाई दे रहा है ऑफिस के काउंटरस बने हुए है और लोग अपनी--

आम बहुत सारे खम्बे में छतरी सी लगाए गए है जिस में लाइटे जल रही है। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है सीढ़ीयां दिखाई दे रही है पीछे की तरफ--

है यहाँ मुझे पर ऊपर की तरफ एक और ब्रीज दिख रहा है इस फोटो में यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक साधु भी खड़ा हुआ है नीचे--

पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे है आसमान --

एक आदमी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसने पेंट शर्ट पहन रखा है पीछे एक बैग बैग टांग रखा है झोला हाथ में गुलाबी कलर का लिया है।

और यहाँ पर बहोत टाइप की है यहाँ पर एक आदमी पीछे की तरफ खड़ा हुआ है यहाँ पर उसका रूम दिखाई दे रहे है रूम में पेंट दिखाई दे रहे है रंग-बिरंगे रंग--

हरे रंग का और लाल रंग का पेंट अ टाइल्स लगा हुआ नज़र आ रहा है।

बीच में अशोक चक्र है यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है एक लड़की खड़ी हुई नज़र आ रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग इन्द्रधनुष की रंग की तरह हैं।

और यहाँ पर खिड़कियों पे जालियां नई वाली जालियां लगी हुई है दोनों तरफ उसकी दीवारे कुछ चटकी हुई दिखाई दे रही--

और कुछ लकड़ियाँ दिखाई दे रही है सुखी- सी जिनकी टहनियाँ और बीच में --

और ये बहुत बड़ा सा चट्टान है चट्टान का आधा रंग काही रंग का दिखाई दे रहा है कुछ गोल्डन दिखाई दे रहा है कुछ--